ये नदी हैं नदी में काफी सारा पानी हैं अगल-बगल पेड़-पौधे जो हरे-भरे हैं काफी बड़े-बड़े हैं और नदी में एक छोटा सा कुछ दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का हैं और उधर सारी नदी के काफी अच्छा प्लेन हैं जो साफ हैं जो मैदान जैसा लग रहा है जो हरे कलर का घास जमा हुआ है।

पुराना सा मकान है मकान के सामने एक तिरंगा का झंडे का पाइप रखा गया है जो लाल ए ऑरेंज कलर का सफेद कलर का और हरे कलर है ।

एक मूर्ति है मूर्ति भगवान का है कालिदास का है काली भगवान का पीछे साइड में एक दीवाल है दीवाल में ऑरेंज कलर का पेंट हुआ है पीछे साइड सामने साइड गेट है गेट में लाल कलर का पेंट है। गेट --

सामने से एक दरवाजे टाइप का लगा हुआ है जो सफेद कलर का है उसमे एक-एक चित्र बना हुआ है जिसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम है सामने से ऐ.सी. लगा है जो सफेद कलर का है और लाइट भी सफेद कलर का है।